अ ये जो सामने में खड़े है वो उनके ड्राइवर हो सकते है यह बस जो है वो --

यहां से दवाइयां और जितने भी सुविधाएं हैं वो प्राप्त करते हैं।

स्त्रियां लड़कियां ज्यादा तर आती है जो अपने लिए आभूषण--

मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना किए जाते हैं उनके सेवा भाव किया जाता है।

और दूध से बनी कुल्फी आइसक्रीम ये सारी चीजें हैं जो यहां मिलती हैं।

यह एक तालाब के किनारे का दृश्य मुख्ता जहां।

यह किसी कमरे का दृश्य है।

ये फोटो जो है क्लिक किया गया है और दरवाजा खुला हुआ है उसे मुख्यता रोशनी अंदर की ओर आ रही है।

यह एक नदी या फिर ऐसे अद्भुत--

जो भी ईश्वर रहते हैं उनको--

यह जो दृश्य जो है वह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बांध का पानी है वह भी बहोत कम ही है इसमें पानी नहीं --

तिरंगे से गुब्बारे से यहां को सजावट करके रखे हैं।

लोग पर्यटक स्थल के रूप में घूमने और आनंद की अनुभूति करने के लिए जाते हैं।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

यहां जो है ए_टी_एम जो है चौबीस घंटे अ प खुले रहते हैं या फिर उपलब्ध रहते हैं।

पढ़ाते हुए शिक्षा देते हुए का चित्र हैं।

और यहां रात का या शाम का समय है जहां लोग मुख्यतः भोजन करने और रात्रि का भोजन करने के लिए उपस्थित--

यह मुख्यतः एक स्कूल या कोचिंग क्लास या फिर विद्यालय का दृश्य है।

जाती है यहां पे खेते या फिर फसले उगने वाली जगह या भूमि हो यहां पर दो इंसान इस बांध के पानी--

यह एक कपड़े की दुकान है जहां मुख्यत लड़कियों के कपड़े मिलते हैं लड़कियों के--